वहाँ पर मुझे बोहोत सारा पोस्टर भी दिखाई दे रहा है वो उस पर कुछ चिट्ठी भी पड़ी हुई है वहाँ पर बोहोत सारा किराने का समान भी उपस्थित मुझे दिखाई दे रहा है समझ नहीं आ रहा है कुछ निसेनी भी वहाँ पर दिख रही हैं।